ब्लू कलर की है नीले कलर की है और ऊपर जो ये पंखे लगे हैं दो पंखे लगे हैं।

ये एक लड़का खड़ा हुआ है लड़के ने नेक -बैंड डाला हुआ है गले में और उसी के बगल में एक लड़की है छोटी बच्ची --

और उसी केे बगल में शिवलिंग है और उसी के पीछे जो है एक रेड और येलो कलर का कुछ बना रखा है ऊपर की तरफ--

ये दो एक बाइक खड़ी हुई है और एक स्कूटी खड़ी हुई है और चार टंकी रखी हुई है सफेद कलर की टंकी है।

ये एक शॉप है और शॉप है दो-तीन शॉप है अ-अ कैरी के बैगस एरा करके लिखा हुआ है एक तो ब्लैक कलर का बोर्ड है जो--

बीच में एक गार्डन बना रखा है और बीचो-बीच मे हरियाली का घास-वगैरह है जिसके ऊपर कटिंग करके काफी अच्छा डेकोरेट बना रखा है डिजाइन --

यह एक रेस्टोरेंट है अह ये एक मंदिर है ये मंदिर मंदिर में एक टेबल लगा रखी है उस पे जो है दिया वगैरह वो जला रखा है।

पेड़ हैं हरी-हरी घासें हैं और कुछ पत्थर हैं काफी पत्थर हैं चट्टान हैं ये पहाड़ की चट्टान हैं।

सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है सफेद कलर की स्कूटी है।

चाइनीस फास्ट फूड एंड हैदराबादी दम बिरयानी करके ढाबा है।

और यहाँ पर दम-बिरयानी मिलती है हैदराबादी की--

प्ले स्कूल की तरह बना रखा है इसको--

कैरेम बोर्ड है खेलने के लिए गाड़ी है बच्चों की खेलने के लिए और काफी पोस्टर लगा रखे हैं दिवार पे--

ये घड़ी हरी-हरी घासें हैं घासें दिख रही हैं।

अंटी खड़ी हुई साड़ी पहन कर खड़ी हुई है अंटी --

और सामने ही एक बाइक पे एक लड़का जा रहा है और बाइक भी खड़ी है यहाँ पर--

काफी सारी छतरी लगा रखी हैं धूप से बचने के लिए--

प्याज आलू दिख रहे हैं मेरे को एक आदमी लाल रंग प्याज आलू--

और काफी लोग जो हैं यहाँ पर सब्जी खरीद रहे हैं किसी ने रेड़ी लगा रखी है किसी सब्जी की--

सामने जो भी दो लड़के है जो है आदमी अंदर की तरफ जा रहे हैं जीने की साइड में रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ ये है जो होटल है कोई होटल गेट-वे --

सामने जो है सूरज है सूरज की किरणें आ रही हैं सीधा--

और दो बच्चे इसी पे खड़े हुए है एक ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है।

एक लड़का है लड़के ने और शर्ट पहनी हुई है अंदर से भले जैकेट की तरह डाल रखी है--

टेबल है टेबल के पूरे अं सर्कल मे जो है चेयर्स बीच मे लगा रखी है।

ये जो है प्ले ग्राउंड है प्ले ग्राउंड में बच्चे-बच्चे हैं काफी सारे बच्चे हैं--

जो की टी-शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की टी-शर्ट है।

ये एक स्टोर है शॉप है और शॉप में भी पंखे लगे हुए है टेबल फेन कहते है जिसे की वो रखे हुए है दो दिख रहे है वो टेबल फेन है।